और साइड पे एक पर्दा टंगा के रखा है।

और टेबल का ऊपर मे ब्लैक कलर का परफ्यूम बहुत सारा है।

और इस साइड में दो ठो माउंटन भी रखा है और तार भी रखा हुआ है।

पहाड़ का ऊपर में एक बड़ा सा बिल्डिंग बना के है।

पीछे में बड़ा बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

मे एक कपड़ा जैसा टंगा के रखा है।

कार पार्क करके रखा है।

फैन भी दिखाई दे रहा है।

और साइड पे बहुत बड़ा पेड़ भी लगा के रखा है।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

बहुत बड़ा बड़ा पेड़ लगा के रखा है।

और बाहर में बहुत सारा फ्लावर लगा के है।

और एक स्कूटी भी पार्किंग करके रखा है।

लाल कलर का टोकरी भी है और अंदर में बहुत सारा प्याज भी रखा हुआ है।

डबल का बैग भी रखा है।

चप्पल भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के साइड में बहुत सारा फ्लावर लगा के रखा है।

टंगा के रखा हुआ है और तीन स्टूल भी रखा है।

दीवार में बहुत सारा बैलून चिपका के रखा है।

इ पिक्चर में एक कलर का दो ठो चेयर दिखाई दे रहा है।

और वायर भी दिखाई दे रहा है।

और एक इंसान मोबाइल पकड़ के रखा है।

ये पिक्चर में एक बड़ा सा रूम है और ब्लैक कलर का सोफा भी रखा हुआ है।

फ्लोर में पांच छह फ्लावर पॉट रखे हैं।

टिना में रेड कलर का कलर लगाके है।

और में टाइल्स लगाके है।